वहाँ एक--- वह एक यार्ड है जहा पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

यह एक क्लासरूम है क्लासरूम में बोहत सारे बच्चे बैठे हुए है और जो टीचर है वो उन्हें समझा रहे है किसी चीज के बारे में। कुछ बच्चे यहाँ पे पानी का बोतल लेके भी बैठे है सामने सबका मोबाइल फ़ोन भी रखा हुआ है।